यहां पे जो दिख रहा है मिट्टी की सीढ़ियां बनी हैं।

पर्दों से ये स्टेज सजाया हुआ है बीच में व्हाइट येलो --